सामने एक दुकान है दुकान में लाईट लगा है दीवाल के पेंट दुकान में ढेर सारा सामान है और ड्रोर पर टिफिन है टिफिन के बगल में है वे--

यह देख के ढोलक लग रहा है हारमोनियम लग रहा है बांसुरी लग रहा है हेलमेट लग रहा है प्लेट है हेलमेट लग रहा है हरदमिया का डमरू लग रहा है।

सब पहले के जमाने का सामान लग रहा है। पोस्टर लगा हुआ है |

हई बॉक्सवा वाला गड़िया के लगे नू ढेरे सारा कबाड़ बा।

है केतना सुंदर । सामने एगो सीसा के टेबल बा। ओईपर दुगो फूल बा। फोन पेयटीएम बा। पीछे एगो सोफा बा। सोफा के ऊपर देवाल पर ---